और यहाँ पर स्कूल वाले बच्चे हैं जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में।

और खूबसूरत भी है ठीक-ठाक यहां का जगह भी अच्छा खासा है यहां पर जो की बहुत सुंदर लग रहा है यहां पर।

और यहाँ पर किया जाता है और पेड़-पौधे भी है यहाँ पर जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में खूबसूरत भी यह है ।

जो की बहुत अच्छा लग रहा है दे --

और भीड़-भाड़ भी है यहां पर और यहां गाड़ी भी खड़ी है दो तीन गो बाइक खड़ी है यहां पे जो की बहुत अच्छा ल --

और सुन्दर भी दो तीन गो कुर्सी भी लगाया गया है लाइन से और हैण्डवाश भी रखा गया है।

थाली में है जो की बहुत अच्छी लग रही है देखने में और बहुत अच्छा यहां पर गेट्स --

और पूरा है ये है।

कराया गया है जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में खूबसूरत है।